और एक कप के ऊपर एक लड़की का पोस्टर लगा है।

और सोफो की बराबर साइड में कुछ सामान पड़ा हुआ है।

लकड़ी की फिटिंग के ऊपर कुछ कापी किताबें रखी हुई है।

यह एक बड़ा सा जंगल है।

पहाड़ों के बीच एक रास्ता निकाला हुआ है उस रास्ते पर कुछ आदमी चलते फिरते नजर आ रहे हैं।

और द्वाल के ऊपर एक बैनर लगा हुआ है बैनर के ऊपर टैंक की ओर एक आदमी दिखाई दे रहा है।